कोई ईमानदार पकडे हे कोई बैठे हे अच्छा दिखत हे।

-- दुकान हे मटन मसाला अउ मैगी राधा सौंफ तार हे खत्री मसाला अउ --

कुछ खाय के हे और अगल बगल अच्छा है।

गमला हे एक रूम हे अ अच्छा अच्छा फूल है वाइट पिंक पीला रेड एक इंसान है।

और गेट भी अच्छा दिख रहा हैं और कलर भी अच्छा हैं और अगल-बगल भी अच्छे दिख रहा हैं बादल भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा हैं अच्छा दिख रहा हैं ।

अउर अगल बगल में अगल बगल बिल्डिंग है और व्हाइट कलर में पोताया है नीचे भी अच्छा दिख रहा है।